छत दिखाई दे रहा है और फर्श दिखाई दे रहा है फर्श पर मैट बिछा हुआ है।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

यहां पर बहुत बड़ा एक खेत दिखाई दे रहा है।

और यहां पे गत्ते की पेटियां दिखाई दे रही है।

ए_डि लिखा है और यहां आसमान दिखाई दे रहा है बिजली के तारे दिखाई दे रही--

आसमान दिख रहा है आसमान में बादल दिख रहे हैं।

लाइट्स दिखाई दे रहीं हैं छत दिखाई दे रहीं हैं छत पर ट्यूबलाइट दिख रहीं हैं।

ये एक स्टेशनरी शॉप दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत सारे केबिनेट्स बने हुए हैं उसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और यहां पेन दिखाई दे रहे हैं।

ग्रिल्स दिख रही हैं आसमान दिख रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बाइक्स दिख रही हैं स्कूटर दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारी कार्स दिखाई दे रही हैं।

यह एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट में टेबल दिखाई दे रहे हैं।

लगा हुआ है और यहां पे बहुत सारी मशीन्स दिखाई दे--

यह एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप में रैक दिखाई दे रहे हैं रैक में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।